जिसका नाम है कावेरी रेस्टोरेंट यह रेड कलर से बना हुआ है।

नीचे गेट है जो की मिरर का है और दो खिड़की है जिसमें कि उसमें भी ब्लैक कलर का मिरर लगाया गया है।

जिसमें की चार चेयर रखा हुआ है ब्राऊन कलर का उसके सामने गोल मिरर लगा हुआ है।

गेट के सामने ही तुम बहुत से छोटे छोटे फ्लावर लगाए गए--

इन्होंने अपने हाथ में एक प्लांट लिया हुआ है।

एक सीढ़ी है जिसपे मग रखा गया है।

इसमें की वाइट कलर का गद्दा बिछाया गया है।

ऑरेंज कलर का ब्लैंकेट है और वाइट कलर का कुछ रखा गया है ऊपर से ए_सी लगाया हुआ है।

और पिलो नजर आ रहे हैं वो दो वाइट एक पर्पल और एक ब्लैक सामने एक परदा लगाया गया है।

इस दृश्य में दिखाई दे रहा है एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है।

दृश्य में दिखाई दे रहा है यह एक बड़ा सा हॉल है।

इसमें दिखाई दे रहा है एक लड़का खड़ा है।

मिरर गेट पर कुछ चिपकाए गया है वाइट कलर का गेट के सामने दो येलो येलो पोस्टर लगाए गए हैं।

ऊपर अब करकट दिया गया है और नि बीच में चार खिड़कियां नजर आ रहा है जिसमें कि मिरर लगा हुआ है।

दृश्य में दिखाई दे रहा है कि यह एक बहुत लंबा सा रूम है।

एक वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है एक बड़ा सा टी_वी है एक कीबोर्ड है एक वाइट कलर का डेस्क बना हुआ है।

ए_सी भी नजर आ रहा है नीचे एक बेसिन है और एक मिरर लगा हुआ है।

दृश्य में दिखाई दे रहा यह एक छत है।

बहुत से बच्चे और औरतें जा रहे हैं।

जिसमे की कारबोर्ड से कंपार्टमेंट बनाके बहुत सा सामान रखा गया है।

पर लाइट लगाया गया है कुछ बॉक्स खाली है।

दृश्य में दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा व्हाइट कलर का मंदिर जैसा बना हुआ है।

बहुत से आदमी बैठे और खड़े हैं ऊपर पंख लगे हुए हैं।

जहां की बहुत से कपड़े रखे गए हैं।

सामने ब्राउन कलर का दीवाल पे कुछ लगाया गया है।

बैठने के लिए भी एक बनाया गया है।